बहोत सी बुक दिख रही है अंदर के साइड --

और बहोत से पेड़-पौधे दिख रहे खुला-खुला आसमान दिख रहा है।

सामने एक बहोत बड़ा क्रिकेट का मैदान दिख रहा है और तीन स्टम्प दिख रहे है और दिख रही है।

ब्लैक कलर की एक वाइट कलर की दिख रही है एक पानी का जार दिख रही है।

आ बहुत से बच्चे दिख रहे है बैठे हुए कुछ हाँथो मै प्रमार पत्र लिए हुए है और कुछ व्यक्ति उपर खड़े हुए दिख रहे है। ।

एक एक्टिवा दिख रही है।

यहाँ पर एक सफ़ेद कलर का बोर्ड दिख रहा है एक अलमारी टाइप दिख रहा है ए सी दिख रहा है शायद ऊपर की तरफ--

जाली दिख रही है और है की और सामने की साइड उम्म उम् मैदान टाइप दिख रहा है उसमे कुछ व्यक्ती दिख रहे है।